मस्जिद के ऊपर एक गोल गुंबद है।

मस्जिद का काम अभी अधूरा चल रहा है इसका प्लास्टर अभी नहीं हुआ है।

मस्जिद के आगे बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान का नाम श्री राजेश्वरी बुक है।

यह मंदिल बहुत भव्य बना हुआ है।

एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है व्यक्ति उसने रंग का कुर्ता पहने हुए हैं।

यह बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें का दृश्य है।

यह एक स्कूल का दृश्य है।

इस मशीन में बालू मिट्टी सीमेंट छड़ और पानी डालकर यह मिक्सर का रूप में तैयार कर देता है।

और इसके बाद इसको पाइप के द्वारा जहां पर ढलाई का काम होता है वहां पर पहुंचा दिया जाता है।

चार फादर का गले में फूलों का माला दिख रहा है।

माला का रंग उजाला और लाल फूल से बना हुआ है।

इसके ऊपर बहुत सारे चित्र अंक लिखे हुए हैं जिसमें हरे लाल रंग के लाइट हैं।

यहां पर एक ब्लू रंग का पोस्टर भी लगा हुआ है।

इस कार्यालय का बाउंड्री पीले रंग का किया हुआ है जिसमें लोहे का जाली लगा हुआ है।

यह एक बस स्टैंड का दृश्य है।

जिसके बिल्डिंग के ऊपर रांची नगर निगम लिखा हुआ है।

इसमें की एक लड़का मोटर स्कूटी पकड़ कर खड़ा है।

इसमें खजूर का भी फल रखा हुआ है।

उपवन का दृश्य है इसमें तरह तरह के फूल गमले में लगे हुए हैं।

सभी में चम्मच लगा हुआ है एक बगल में चम्मच रखा हुआ है।

यहां पर एक सामने में कुर्सी रखा हुआ है जिसका रंग कि काला है।

इस पौधाशाला में तरह तरह के पेड़ पौधे छोटे बड़े सभी लगे हुए हैं।

उसके आगे में बहुत सारे मोटरसाइकिल और स्कूटी लगे हुए हैं।

एक दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

एक साइकिल भी लगी हुई है।

फल मे केला है तरबूज है अमरुद है सेव है और मिक्चर भी रखा हुआ है।

इसमें मंडप छाया हुआ है मंडप में बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है।

अनार ये बिल्कुल लाल जैसे दिखाई दे रहे हैं।

एक दो व्यक्ति खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक फर्नीचर कादुकान है।

कमरे मे लाल पीले हरे रंग के बिल्डिंग दिखाई दे रही है।